इस फोटो में कैफे नजर आ रहा है इस फोटो में प्लैटे नजर आ रही है।

इस फोटो में रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

टो मे नज़र आ रहे--

इस फोटो में ऑफिस नजर आ रही है इस फोटो में टेबल नजर आ रही--

इस फोटो में बस नजर आ रही हैं।

इस फोटो में फायर ब्रिगेड नजर आ रहा है।

इस फोटो में गेट नजर आ रहा--

इस फोटो में छठ पूजा नजर आ रही है।

इस फोटो में केला नजर आ रहा है इस फोटो में लोग नजर आ रहे--

कुछ चीजें नजर आ रही--

इस फोटो में झरना नजर आ रहा है इस फोटो में पत्थर नजर आ रहा--

इस फोटो में एक्टिवा नजर आ रही--

इस फोटो भारत पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।

इस फोटो में कपड़े नजर आ रहे हैं।